वाइट बोर्ड है कुर्सियाँ है लाल कलर के और काला कलर के है दोनों तरफ बल्ब है एक आदमी है एक आदमी बैठा हुआ है।

टोटल सिगरेट का प्रचार है| बिक्की ओटो का दुकान है स्वेटर का दुकान है सुधा का दुकान है।

साइड में टी.वी. भी है आ कुर्सियां हैं पानी का डब्बा है दो आदमी भी है।

रस्सियाँ टंगी हुई है।

गुरु स्वीट एण्ड स्नैक का दुकान है। इसमे लड्डू गुलाबजामुन ईसपोनज पनीर रसमलाई--

एक चार चक्का है जिसमे चार टायर है दो आगे बल्ब है उनके बगल में एक साइकिल वाला है एक टोटो है।

पूली पुलिटी पेस्ट्री शॉप है ।

फ्यूचर लिडस एकेडमी नामक कोचिंग है। इनमे एक टीचर है। व्हाइट बोर्ड है। टीन का दीवार है। एक साइड प्लाइ का दीवार है।